एक लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ है जो के चाय लेने के इंतज़ार में बैठा है तथा वहाँ पे बहुत से लोग बाद में खड़े है ।

ये इमेज में हमे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जोकि मरम्मत हो रही है त-बिल्डिंग के आसपास हमे बहुत बड़ी-बड़ी सरिए दिखाई दे रहे है।

औरते खड़ी हुई दिख रही है जोकि बिल्डिंग के बाहर खिड़की से झांक रही है।

यह इमेज में हमे एक आदमी दिख रहा है जोकि कांच के सामने खड़े होके अपनी फोटो खींचता हुआ नज़र आ रहा हैं वो नीले कलर की जेकेट पहना हुआ है तथा उसकी पीछे--

सफ़ेद कलर के रंग से कुछ न कुछ लिखा हुआ है तथा वो बस का कलर हमे नीला दिखाई रहा है वहाँपे एक कंडक्टर खड़ --

यह इमेज में हमे एक बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा है जिसके अंदर हमे एक बहुत बड़े फादर बैठे हुए दिख रहे जो के लाल कलर का कोट पहने हुए है।

वो आदमी लाल कलर के मोबाइल से अपनी फोटो खींचते हुए नज़र आ रहा है और एक आदमी उसके बाल काटते हुए न--

यह इमेज में हमे बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जिसके नीचे हमे एच_डी_एफ_सी ए_टी_एम लिखा हुआ दिख रहा है जो कि नीले कलर की बैनर के ऊपर लिखा गया है।

वो बच्चा-वच्चा पूरा है तथा वहा एक वो बच्चा अपनी फोटो खींचा रहा है वह फोटू के लिए पोज़ देता हुआ नज़र--

यह इमेज में एक बोहत बड़ी सलून की दुकान दिख रही है जिसके अंदर हमे एक लड़का कटिंग कराता हुआ नज़र आ रहा है।

वह चर्च की बिल्डिंग है तथा वह पे एक लाल कलर का सिंबल लगा हुआ है चर्च के बाहर हमें कुछ लोगो कॅन्डल लगते हुए नज़र आ रहे है वह लाल कलर --